जो के एक स्कूटी भी नजर आ रहे है एक गेट नजर आ रहे है जो कि टीन के बने हुए है।